और राइट साइड एक गेट है जिसके बगल में एक पलंग है और एक आदमी खड़ा है।

और बहुत सारा बेसिन है जिसका कलर हरा व्हाइट लाल ब्लू हरा है।

इस चित्र में बहुत सारा गेंदा का फूल है जो पीले कलर का है।

इस चित्र में एक दुकान है जिसका नाम मोहन जी रेडीमेड है।

इस चित्र में एक बड़ा सा सामने गोदाम है जिसमें ब्लू कलर का पेंट किया गया है बाहर।

और राइट साइड एक लाल कलर का टेबल है और दुकान के ऊपर सीलिंग में बहुत सारा डिजाइन है।

और कप के अंदर चाय है और कप का कलर वाइट और लाल है जिसमें लिखा गया है नाइस कॉफी।

और इस ग्राउंड में बहोत सारा लाइट लगाया गया है और बहोत सारे आदमी लोग बैठे हुए हैं।

और सामने बहुत सारा घर है जिसमें एक करकट लगाया गया है और बगल में बड़ा सा पेड़ है।

इस चित्र में सामने एक बड़ा सा घर है जिसके बगल में एक गाड़ी लगी हुई है जिसके पीछे बहुत सारा--

और लेफ्ट साइड एक आदमी है जो हाथ पर मोबाइल पकड़ा हुआ है।